और यहाँ हॉस्पिटल के बहोत अछ-अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है सबको।

हेल्लो दोस्तों जैसा की आप सब देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा जो की बिल्डिंग के रूप में है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बहोत सारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग भी बेहद बड़ी है और --

दुकान भी है जो की अभी बल-बंद नजर आ रही है। और ये जगह भी बहोत ख़ूबसूरत है।

और यह बिल्डिंग का कलर भी बहोत अच्छा है और इसकी इनारे किनारे बहोत अच्छी जगह है।

हेल्लो दोस्तों जैसा की आप सब देख रहें हैं यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि बहोत अच्छी है जो देखने में बहोत ही प्यारी आकर्षित है।

हेल्लो दोस्तों जैसा की आप सब देख रहें हैं यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि बहोत ही प्यारा है और देखने में बहोत ही ख़ूबसूरत है और यहाँ पे --

हेलो जैसा की आप सब को दिखाई दे रहा है की यहाँ पे एक चित्र है। जो बहोत ही अच्छा है और आकर्षित है। यह एक बिल्डिंग का चित्र है। जो की बहोत ही प्यारा है।

हेलो दोस्तों जैसा की आप सब को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक चित्र है जो कि बोहोत ही ख़ूबसूरत है। और यह बहोत अच्छा लग रहा है। और यहां पे एक --